व्हाइट कलर का है रेड कलर का है और एक यहां पर देख रहे हैं एक आदमी भी दिखाई दे रहा है और यहां पर एक टेंट भी लगवाया है जो ऑरेंज कलर का है जो काफी अच्छा नजर आ रहा है।

इंग्लिश टॉयलेट है और ये बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन की है और यहाँ पर आप देख रहे है सारी व्हाईट कलर की है व्हाईट कलर बहोत प्यारा लग्ग रहा है ।

यहाँ पर हम देख रहे है एक पूल है पूल पर हम देख रहे है काफी नज़ारा बहोत अच्छा है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे गाय काउस भी है और काई भी है और यहाँ पर आप देख रहे है बहोत ही ज्यादा मात्रा में पानी है और उदर उधर एक मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रही है।

और इसमें अभी पटी लगाई हुई है और कुछ सरिया भी लगाया हुआ है और इसमें कई सारे मजदुर बन रहे है और एक मिस्त्री भी है और एक मकान मालिक भी है और एक बाल्टी भी दिखाई दे रही है और छजरी भी लगी हुई है।

यहापर आप देख दुकान दिखाई दे रहे है जो काफी अच्छी नज़र आ रही है यहापर आप देख रहे है रखी हुयी है जिसमे तेल है।

यहाँ पर आप देख रहे है अरोरा यहाँ पर आप शॉप कर सकते है मांडव पैकिंग मटेरियल और यहाँ पर आप देख रहे है शीशे बहोत सारे पेंटिंग्स सी बनी हुई है काफी अच्छी लग रही है और टाइले टाइले लगी हुई है।

और यहां पर जो दीवार है वह व्हाइट कलर की है।

यहाँ पर आप देख रहे है एक व्यक्ति नज़र आ रहा है जो सुरंग में जा रहा है और उसने ब्लू कलर टीशर्ट पहनी हुयी है और ब्लैक कलर की उसने पैंट पहनी हुयी है।

यहां पर आप देख रहे हैं एक नज़र आ रहा है जो सीमेंट का बना हुआ है।

कुछ पेड़ पौधे इसमें सूखे हुए हैं कुछ इसमें हरियाली वाले हैं।

और कुछ रबर भी रखे हुए कुछ कटर भी रखे हुए है।

यहां पर आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है मंदिर में आप देख रहे हैं एक तस्वीर बनी हुई है।

आप यहां देख रहे है एक आया लड़का है जो जिम करने के लिए आया हुआ है इसने बॉडी भी काफी अच्छी बनाई हुई है उसने ब्लै अं ब्लैक कलर का बलियान पहना हुआ है और ब्लैक कलर की जींस पहनी हुई है।

और इसके पीछे कुछ और लड़के जिम कर रहे है और ये मशीनो के पास खड़ा वा फोटो खींच वा रहा है इसने हाथ में एक घड़ी भी पहनी हुई है और इसकी बॉडी काफी अच्छी दिख रही है उसने काफी सालो से मेहनत की हुई है।

ये वजन उठाने का काम करती है भारी से भारी वजन को उठा लेती है।

और एक गना बाई खड़ा हुआ हे जिस तरह सकते हैं।

यहा आप देख रहे है एक फेक्ट्री है फेक्ट्री में वर्कर काम कर रहे है जिसने ब्लैक कलर की टीसर्ट पहनी हुई है और हाथो में इसने--

और कुछ पे पेड़ पोधे भी लगे हुए है।

हाँ वाइट कलर में लिखा हुआ हें और इसमें ब्लैक कलर भी लिखा हुआ हैं।

यहां पर आप देख रहे हैं ये एक रोडवेज अड्डा है यहां पर हरियाणवी रोडवेज खड़ी हुई है और यहां पर बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

कि आप देख रहे हैं घर कितना मजेदार बनाया हुआ है इसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

ये बहोत अच्छा है जिसमें ब्ल्यू कलर का बोर्ड लगा हुआ हैं।

जो भारत की शान आन बान है यहां पर बहोत सारी इ रिक्शाएं दिखाई दे रही हैं।

और बहुत से लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं।

कुछ व्हाइट कलर का है जो काफी अच्छा लग रहा है।

ठीक कराने के लिए लकड़ी दी हुई हैं और--

पैर भी खराब हुआ है और इंजन भी खराब है।

और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है मिस्त्री इसे ठीक कर के ही छोड़ेंगे और एक बंदा भी लगा हुआ है।